हमारे देश के लिए हम स्वतंत्रता दिवस गणतंत्र दिवस--

छठ पूजा मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश बिहार झारखंड और उत्तराखंड की कई क्षेत्रो में पाया जाता है छठ पूजा जो अम्म अम्म सूर्य देवता के उपासना के लिए किया जाता है।